सब खाने का सामान रखा हुआ है और तीन चार लोग खडे है।

पानी बहुत बह रहा है दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं है।

कुवां हैं बीच के में और एक बड़ा सा पेड़ हैं।

साइड में पहाड़ है और बहुत सारा अ पेड़ है छोटा-बोड़ा बहुत सारा पेड़ है।

और बहोत सारा नुडुल्स है अंडा भी है।

एक आदमी ध्यान कर रहा हैं वो उल्टा तरफ लटक रहा हैं में लाइट हैं।